यह एक जगह है और यह एक तालाब दिखाई दे रहा है।

यहा एक बस है और बस मे बहुत सारी--

यह एक कमरा है और यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

बस खड़ी हुई है और बसके आसपास कुछ पेड और पौधे भी दिखाई दे रहे है।